लगो बड़ा गैरेज नियर बनेले मिस्त्रिया बड़ा बड़िया लग रहल है ।

बहुत दूर-दूर के यात्रा करल लगल रहे ई बस --

ओ ई तो लग रहलो कगजा के लैंप उम्प बनवे के प्रतियोगिता हो रहलो की कागज़ के कौन चीज कौन चीज़ त सजवे वाला सामान बना सक हई।

इधर लोलीपोप चिकन लोलीपोप त मटन लोलीपोप बियर भी बनो है यहाँ खाए में खूब म आनन्द आवे है सब अपन परिवार साथ आये --